यह कुछ लोग घर में निर्माण हेतू ईटें जोड़ते हुए नज़र आ सकते हैं घर के चारो और काफी सारी इमारतें भी दर्शाइ गयी हैं।

जहाँ पूरी जगह पर सरसो की खेती देखी जा सकती है वही खेत के बीचो बीच दो पेड़ दर्शाए गए हैं।

छवि में हमें एक बहुत ही भव्य और बड़ी इमारत के भीतर का दृश्य को दर्शाया है।

बाजार के बीचों-बीच स्थित एक मैदान में रखे काफी सारे वाहनों का दृश्य दर्शाया गया है।

जहाँ कुछ वाहन बिजली से चलने वाले रिक्शा स्वरूप भी दर्शाये गए हैं। यह वाहन आम तौर पर ऑटो के नाम से जाना जाता है।

चाय पत्ती के पौधे के आलावा काफी बड़े-बड़े पेड़ भी देखे जा सकते हैं जोके पूर्ण रूप से हरे-भरे दर्शाए गए हैं।

जो की बहुत ही सुंदर रूप से सजाई हुई देखी जा सकती है। थाली के ऊपर एक बहुत ही सुंदर बर्तन मे रखे आइसक्रीम देखे जा सकते है।